यहाँ पे बहोत सारे बैनर्स लगाए गए यहाँ पे--

बहोत सारे लोग खुर्सियों के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं बाजू में।

ये एक मछलियों की दुकान है और यहाँ--